इस तालाब के किनारे काफी बड़े-बड़े पेड़ भी है इस तालाब में काफी पानी भी है यहाँ पर काफी औरत आई हुई है यहाँ सभी औरत हाथ जोड़े हुए है यहाँ पर कोई पूजा हो रहा है।

यह ग्राउंड में एक गेट है यह गेट काफी बड़ा है इस गेट पर एक राष्ट्र ध्वज है यहाँ पर दो शेर के चित्र दिए गये हैं इसके किनारे एक सड़क है इस सड़क पर बहुत से आदमी --

यह पर एक टेबुल है। इस टेबुल पर काफी बलून दिए हुए है। इस टेबुल पर एक केक रखा हुवा है। यहाँ पर काफी आदमी है। यहाँ पर किसी का बर्थडे हो --

कुर्सी लगे हुए हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी है यहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं यहाँ पर ट्यूशन पढने के बदले पैसा देना पड़ता है यहाँ पर कई महापुरुष के चित्र भी हैं।

यहाँ पर सामान काफी सुन्दर है सस्ती मिलती है यहाँ पर आदमी की भीड़ काफी है।